वे कुछ लोग खड़े हुए है फ्रूटस की दुकान भी है ओ--

पर्क बना हुआ है काफी सारे लोग खड़े हैं गाडियां--

यहां पे एक मूर्ति खड़ी हुई है डेकोरेशन की हुई हैं फ्लावर से पत्ते व--

टी शर्ट की शॉप है स्पोर्ट स्टाइल लिखा हुआ है दो पोस्टर लगे हुए हैं टी शर्ट्स है।

आदमी खड़े हैं एक वर्कर भी है वहां पे लगी हुई।

कच्चा सा मैदान है ये यहां पे ग्रास लगा हुआ है पेड़ लगे हुए हैं।

ऑपरेशन का सामान रखा हुआ है कैंची-वगैरा रखी हुई है।

झरना बह रहा है यहाँ पे दो आदमी लड़किया जो नहा रही--

मिट्टी है गांछ लगा हुआ है पेड़ लगे हुए है यहां पे।

मिरर वगैरा भी लगा हुआ है बेडरूम बड़ा अच्छा सजाया हुआ है।

रोड है ये यहां पे टेंपू खड़ा--

टाइम टू किल सम फैट लिखा हुआ है पोस्टर लगे हुए है डोनट स्टॉप लिखा हुआ --

मार्बल की शॉप है मनीष मार्बल मार्बल रखा हुआ है पेड़ लगे हैं कांटेक्ट नंबर लिखा हुआ--

ड्रम रखे हुए है यहां पे बाइक खड़ी हुई--

पेड़ के ऊपर एक आदमी आ रहा है एक आदमी जा रहा है वो भी बाई --

दो रखी हुई हैं कंबल रखे--